और इसकी दीवार पर ब्राउन कलर भी हुआ है।

इसकी दीवारों पर करीम कलर हुआ हुआ है और इसमें कुछ बेंच भी पड़ी हुई है।

यह एक डी_जे है जिसका कलर ब्लैक है।

इसकी सामने की दीवार पर सफेद कलर हुआ है।

यह एक मंदिर है जिसकी बाहर की दीवार पर सफेद कलर हो रहा है।

यह एक ग्राउंड है जिसमें हरी घास है।

इस चित्र में एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे व्यक्ति योगा कर रहे है।

इस चित्र में एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

और एक टेबल पर एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

जिसकी दीवारों पर सफेद कलर हो रहा है।

और यहां पर एक कांच की टेबल भी रखी हुई है और यहां पर एक गेट भी लगा हुआ है।

और इसकी छत में एक टीन डली हुई है।